अपने जीवन में काफी बिजी हो चुके हैं जो की फ्री का तो नाम ही निशान ही नहीं है।

देखा जा रहा है की यह एक प्रकार की सिटी नजर आ रही है जिसमें की बिकी गई सारी इमारतें नजर आ रहीं है।